पीले सफेद कलर का पर्दा लगा हुआ है जिसमें ऊपर--

बना हुआ है जो सफेद कलर का है जिसमें एक स्केट लगा है और ऊपर हीरो --

सामने बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमें बहुत से--

पीछे ऊंचा पर्वत बना है जो सफेद कलर का है ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट टेंट लगा हुआ है और दोनों साइड नीले कलर का--

दिख रहा है बाहर बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं और कुछ एक महिला ऊपर लड़की ऊपर खड़ी हुई--

बंधना सर्जिकल मोतिहारी लिखा हुआ है नीचे एक महिला और एक आदमी--

सामने एक गेट दिख रहा है जो लोहे का है।

पेंट लगा हुआ है और सामने स्टेज बना है जिस पर कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं और गुब्बारे लगे हुए हैं पीछे रंगीन फूलों की झालर--

बहोत से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं पीछे दीवार सफेद कलर की है।

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी काला दिखाई दे रहा है जिसके सामने--

दिखाई दे रहे हैं और उस साइड किनारे पर खेत दिख रहा है ऊपर सफेद आसमान दिख--

इसमें पिंक कलर की पट्टी बनी हुई है।

अ बोर्ड है जो पिंक पिंक कलर का है जिसमें एक नीला बोर्ड लगा हुआ है जिसमें--

कुछ बस रिक्शे और साइकिल दिख रही हैं और साइड में कुछ बैग और बॉक्स --

दिख रही है जिस पर कुछ कार दिखाई दे रही हैं और दूर बहुत सी बिल्डिंगें दिख रही हैं और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक दुकान है जिसमें ऊपर बहुत सारे सामान--

सामने एक दीवाल दिख रही है जिसमें अंदर--

बहुत सारी मूर्तियां बनी हुईं हैं जो अलग अलग--

टेबल बनी हुई है और जो ऊपर रंगीन और नीचे कथाई कलर की है सामने एक लड़की--

पट्टी बनी हुई है और नीचे दीवाल सफेद कलर की है जिस पर--

आर एल इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है और दोनों साइड दीवाल है अंदर--

सैनिक साइकल मार्ट लिखा हुआ है और रिक रिक्शा और आदमी का फोटो --

सामने बहोत सारे चैंबर बने हुए हैं जो ऊपर क्रीम कलर की और नीचे कत्थई कलर की है जिनके सामने काली--

कलर की कुर्सियां रखी हुईं हैं और सामने एक ऑरेंज कलर का गमला--

ने एक बिल्डिंग दिख रही है जो डार्क --

सामने एक दीवाल दिख रही है जो आधी सफेद आधी काले कलर की है जिस पर पंख बने हुऐं हें सफेद में काला पंख और काले में सपे --

पीले कलर की चादर है और साइड में दीवाल पर फूल बना हुआ है जो पिंक कलर के है और सामने ग्रीन कल ग्रीन और काले कल--

सामने एक तीनों का घर दिख रहा है जिसमें बाहर नीली सफेद--

अ टेंट लगा हुआ है और नीचे बहोत से गमले दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी--